इस चित्र में एक जंगल को दर्शया गया हैं जंगल में कुछ पशु भी दिख रहे हैं और साथ में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो कि बहोत अच्छे हैं।

यह चित्र एक फल फ्रूट की दूकान का है जिसमें अनेक प्रकार के फल फ्रूट पड़े हैं।

यह चित्र किसी बैंक के ए.टी.एम. का है जो की ए.टी.एम. में तीन से चार लोग अंदर खड़े है और एक आदमी अपने बैंक के से ए.टी.एम. निकाल से पैसे निकाल रहा है और ए.टी.एम. का नाम स्टेट बैंक ए.टी.एम. है।